इस दृश्य में दो टेंपो दिखाई पड़--

बैलून का कलर सफेद और गुलाबी है।

साइड में बड़े बड़े पेड़ लगाये हुए है जो कि हरे भरे है।

उसको एक आदमी ठीक कर रहा है जिसमें ब्लू रंग का शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहना है।

सामने में दो तीन पोल दिखाई पड़ रहे हैं।

व फ्लॉवर्स लगाये हुए है।

इस दृश्य में एक बड़ा घर दिखाई--

जिसपे रोहित भेटनरी हाउस लिखा हुआ है।

खिड़कियां में शीशे के दरवाजे लगाए हुए हैं।

सफेद रंग से होटल बंधन एवं हॉल लिखा हुआ है।

उसपे बहुत सारी खिड़कियां छोड़ी हुई--

झरने से गिरता हुआ पानी सफेद रंग का दिखाई पड़ रहा है और उसमें कुछ गैस भी बन रहे--

आगे में एक स्काई ब्लू कलर का लोहे का कुछ रखा हुआ है।

इस दृश्य में एक टेबल नजर आ--

पीछे पलंग में जो लगाया जाता है वो दिया हुआ है।

इस पे लाल और नीले रंग से आराध्या डिजिटल एवं मोबाइल एजेंसी लिखा हुआ ह--

नीचे दुकान का शटर बंद है।

ऊपर में एक झोला टांगा हुआ है जो की सफेद रंग की है।

सामने में तीन टेबल दिखाई पड़ रहे जो कि भूरे और काले हैं।

एक पोस्टर का कलर लाल सफेद है और पिछले वाले पोस्टर का कलर सफेद है।

यह दृश्य एक दुकान का है।

बाउंड्री का रंग सफेद और लाल दिखाई पड़ रहा है।

लुंगी पहना है पीछे में पीले कलर का कुर्ता पैंट पहना है सफेद रंग का।

पीछे बहोत सारी दुकान दिखाई पड़ रही है सारी दुकान के शटर बंद है।

ये दृश्य एक फोन दुकान का है जहां पर कबर्ड में बहोत सारा फोन दिखाई पड़ रहा है।

इस तस्वीर मैं एक दुकान दिखाई पड़--

डब्बे का कलर पीला हल हरा सफेद दिखाई पड़ रहा--